यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ ये सब को दिखाई दे रहा है और एक बड़ा सा लोहे का गेट दिखाई दे रहा है जिसके अन्दर से कोई लड़का जा रहा --

यहां पर काफी सारी कुर्सियां है जो ब्लैक कलर की कुर्सियां रखी हुई है जिन पर दो लोग बैठे हुए है काफी सारे लोग बैठे हुए है।

बड़ी-बड़ी किताबें रखी हुई हैं और कुछ डिब्बे मे कुछ रखा हुआ हैं।

यहां पर कुछ लोग है जो कुछ चढ़ा रहे है काफी सारे लोग है और कुछ पन्नी-वन्नी पेड़-एड़ ऐसा कुछ रख रहे है यहां पर फल-वल --